और कुछ लोग बैठकर--

जो कि रायपुर ब्रांच का है।

ये एक ढाबा है जिसका नाम गतवाली ढाबा है यहाँ पार वेज नॉनवेज --